तस्वीर किसी पहाड़ी इलाका का लग रहा है।

यह तस्वीर किसी के गार्डन या बैकयार्ड का लग रहा है।

यहां में तीन लोग योगा कर रहे हैं जिनमें से दो बच्चे हैं।

इस रोड में स्पीड ब्रेकर भी लगा हुआ है।

फोटो में हमें बहोत हरियाली नजर आ रही है।

तस्वीर में हम डॉक्टर नर्स और पेशेंस को भी देख सकते हैं।

तस्वीर में एक बिल्डिंग दिख रही है और नीचे में काफी सारे छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में आप लेटर बॉक्स देख सकते है।

साइट को पहले खोदा गया है उसके बाद से यहां रोड बिछा कर सीमेंट का बेस ढाला जा रहा है।

घर के आगे की तरफ दो डस्टबिन रखे हुए हैं एक ब्लू एक ग्रीन एक गीले कचरे के लिए एक सूखे कचरे के लिए।

यहां में चार लोग बैडमिंटन खेल रहे है।

यहां काफी सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह जो तस्वीर खींची गई है यह एक बेंच से बैठ के खींची है।

यह तस्वीर कोई बहोत बड़ा पार्क का लग रहा है।

इस रेस्टोरेंट में काफी सारे सामान मिलते होंगे।

इस ओवर ब्रिज को काफी साफ सुथरा रखा गया है।

इस दुकान का नाम फॉरएवर क्लॉथ स्टोर्स है।

यह तस्वीर किसी एयरपोर्ट या फिर कोई बहोत बड़ी जगह का है।